ईं तस्वीर का माध्यम से जन की मैं देख सक्दु ईं तस्वीर पर एक एयरटेल फोर जी को बोर्ड छ लग्युं।

अच्छे ढंग से एक दाड़ी छ उगीं एका बड़ा बाल खड़ा छन कर्यां यी नाईं की दुकानीम मा छ आयुं पिछाड़ी बिटिन ड्रोज भी दिखेणु मैं कुर्सी छ दिखेणी एक और लड़का छ दिखणु जोकि सिसा मा चो आयुं और पिछाड़ी पंखा और ए.सी भी छ दिखेणी।

तस्वीर छ यु एक स्कूल की छ ये पर काफी सारा बच्चा दिखेणा मैं कुछ नौनी छन कुछ नौनियाल छन।

अलग-अलग कार्यक्रम छन यु कन्ना अलग-अलग कार्यु करीके कारिस्थानी छन यु कन्ना पेपर काटी क यू अलग-अलग डिजानयूँ छन बणौना ये फर मैडम बी छा मैडम यूँथे कागज छ देणी कागज क कुछ बणौन छा लग्यां।

एक आदमी की टाई च पेनी और सूट-बूट स्वेटर सब पेनी इ नाइ की दुकान म च आयुं अपणी सेल्फी च लेणु फोनन और छोटा बच्चा भी च दिख्याणु सेल्फी फ़ोन पर और पिच्याडी भीटे जो च सीसा में बी च आणा और एक आदमी हरी जैकेट च पेनी वे बी च आणु।

जे पर सवा बारा छन बजणी नीसाण बिटिन एक युवक छ दिख्योंणु जु की बाइक पर सवार छ होयु और सीढ़ी भी छन दिखेणी।

ये तस्वीर छ ये पर लिख्युं आर.के. कॉफी स्टाल यू एक कॉफी स्टाल छा जखम काफी आदमी चाय और कॉफी पिण छ आयां।

ये बस के सफ़ेद रंग छ जै मा लिख्युं छ जै पर पिछाड़ी बिटिन दुकानि दुकानि भी छन। एक साइकिल वालू भी छ यख आयुं जो की सुरति छ घिसणु।